लड़कियां दिखाई दे रही है। ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

बिस्किट रखी हुई है टॉफी रखी है।

एक लड़की बैठी हुई है फत्तर दिखाई दे रहा है।

तार दिखाई मम खम्बे दिखाई दे रहे हैं।

मकान के अंदर उम्ह ग्रीन कलर के पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

पानी वाला ड्रम रखा हुआ है।

वाइट कलर के बादल दिखाई दे रहें --

एक बैनर बोर्ड लगा हुआ है।

इसमें लोहे का गेट लगा हुआ है।

लाल कलर की रेड कलर की ग्रीन कलर की फूल-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

वाइट कलर की पंखे लगे हुए हैं।

पिंक कलर दिखाई दे रहा हेन --

खेतों में तालाब भरा हुआ और तालाब भरे हुए हैं।

ग्रीन कलर के दो पौधे दिखाई दे रहे हैं।

बोट पे कुछ तालाब नदी पानी से तालाब भरे हुए है।

एक टे एक माकन दिखाई दे रहा है।

छत पे कुछ जेंट्स लोग खड़े हुए है।

कुछ लोग खाना खा रहे हैं।

दो बाउंड्री दिखाई दे रही है।